कूदने के लिए भी कुछ है और एक पूल जैसे यहाँ पे बना हुआ है और यहाँ पे काफी सारे जेंट्स दिखाई दे रहे है और ये बहोत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है इसके आइट साइड बहोत सारे घर उन भी बने हुए है और बिल्डिंगे दिखाई दे रही --

एक घर जैसा दिखाई दे रहा है इसमें का मतलब काफी सारी लाइट लगी हुई है यहां और यह पिंक पिंक कलर में दिखाई दे रहा है यहां पर चेयर वगैरह भी बहुत सारी रखी हुई है।

एक बड़ा सा पेड़ भी है यहाँ पर आसमान नीला दिख--

बंजर है और कुछ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं मौसम पूरा नीला सा दिखाई दे रहा है और छोटे-छोटे पत्ते पड़े हुए हैं और छोटे-छोटे पेड़ भी हैं।

और एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें ये लिखा हुआ है राधे-राधे और भी बहुत सारे मतलब लिखा हुआ है कुछ और फूलों से दिखाई दे रहे हैं टेबल पर बहुत सारे।

उसकी खिड़कियाँ गेट वगेरा दिखाई दे रहे ब्लैक ब्लैक से और यह बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है एक घर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसपे कवेलू वगेरा चडे हुए है।

और नीचे रोड जैसा दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का उसपे मतलब ट्रे जैसी रखी हुई है उसके अंदर हे ये और ये जो ट्रे है ये रेड रेड सी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक मंदिर जैसा मतलब गेट बना हुआ है ये जो गेट है ये लगा हुआ है और इसके आगे एक रोड है रोड पे से एक ऑटो वगैरा निकलके जा रही है और एक अंकल खड़े हुए है।

और यहाँ पे मतलब बहुत सारे गेट दिखाई दे रहे है और ये डबल मंज़िल का दिखाई दे रा है।

और बहुत सारी कुर्सिया यहाँ पे रखीं हुई हैं कुर्सियों पे व्हाइट कलर के पर्दे डले हुए है स्पीकर वगैरा यहाँ पे रखें हुए है जगे जगे पोस्टर लगा हुआ है और ये कोईसा सिनेमा हाउस दिखाई दे रहा है।

कोई यहाँ खड़ा हुआ है इनको बेचने के लिए और नीचे डब्बे वगैरा रखे हुए है व्हाइट कलर के और एक पय्या भी रखा हुआ है और ये ट्रे मे रखी हुई हैं सारी फिश ।

यह काफी बड़ी-बड़ी दिखाई दे रही है और यह शायद किसी होटल में रखी हुई है एक ट्रे है जो की काफी बड़ी दिखाई दे रही है उसके अंदर यह काफी सारी जो फिश रखी हुई है।